यहाँ पे उसके नीचे में बहोत सारे छोटे-बड़े घर दिखाई दे रही है।

सामने में बहोत सारी लड़कियाँ-लेडीज लड़के दिखाई दे रहे है।

यहाँ हरे-हरे पत्ते लगे हुए है।

उ कुछ जाली जैसा रेलिंग जैसा लोहे का लगा हुआ है। पानी पूरा भरा हुआ है।

कोई बड़ा-सा बस है ऑटो है कारे है।

ए टी एम लिखा हुआ है साइड में एक बड़ा-सा पेड़ है।

और सामने बहोत बड़ा-बड़ा सा झूला लगा हुआ है बहोत --

खाई दे रहे है। साइड में यहाँ पे बहोत सारी बाइके रखी हुई है।

एक दरवाज़ा है जो काँच का दरवाज़ा दिख रहा है और साइड में--

जिसके सामे बीच में एक बड़ा-सा नीले कलर का पोस्टर लगा है।

च हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा है।

जो ब्लू और वाइट कलर का है आप--